और अ कुछ झूले भी हमें दिखाई दे रहे हैं और अहं पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं।